और यहां पर कुछ बैनर लगे हुए हैं जिसमें मां की रसोई लिखा हुआ है।

होटल के सामने कुछ बैनर लगे हुए है दीवार पर।

इस अस्पताल शेप मे लग रहा है डॉक्टर अशोक कुमार नाम लिख रहा है या डॉक्टर रीना अग्रवाल भी लिख रहा है।

यहां पर सभी प्रकार की डिस्पोजल क्रॉकरी उपलब्ध है ये ट्रेडर्स --

यह टायर पंचर की दुकान लग रही है।

फाइल से भी रखी है।

यह एक ग्राउंड का फोटो है।

सामने एक बैनर भी खड़ा हुआ है उस पर एक लेडिज सी छप रही है जिसके मुंह पर बलर है।

यह ठीक कर रहा है आदमी इस आदमी के मुंह पर ब्लर लगा हुआ है।

और एक बंदा झुक रहा है।

इसमें एक बंदा लाल सी टी शर्ट में है एक ब्राउन सी टी शर्ट में है।

और एक दो के मुंह पर ब्लर हमें नहीं दिख रहा है यहां पर बेस पेटी भी रखी हुई है लाइट से भी लगी हुई है।

हमें इस फोटो में एक माइक भी दिखाई दे रहा है।

और यहां कुछ दवाइयां भी रखी है मेज पर--

और ये कुछ लेडिस भी खड़ी हुई है कुर्सी बिछी हुई है।

इसपे काउंटर भी दिख रहा है।

चारो तरफ इसके पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

सामने कुछ वेंकट हॉल का ही दिख रहा है।

इसकी साइड में दो खंभे लगे हुए हैं एक खंभा सीधा है एक थोड़ा सा झुक रहा है।

सामने एक औरत खड़ी हुई है।

और यहां पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

व्यू भी दिख रहा है।

इसके सामने हरे हरे पौधे और सामने ग्रिल लगी हुई है गेट बंद है।

और साइड में एक पेड़ खड़ा हुआ है।

और यहां पर बहोत सी चीजे भी रखी हुई है।

दो तीनक फ्रिज भी दिख रहे हैं।

सामने दो पिलर लग रहे हैं जिसमें लाइट जल रही है।

प्लाई रखी हुई है दरवाजा कहीं--

कोई यहां बहुत सी कुर्सियां और दवाइयां भी रखी हुई है।

और एक बंदा और दिख रहा है उसकी --

कई सारी टेबल भी रखी हुई है।

इस फोटो में हमें एक मकान का व्यू दिख रहा है जिसमे की ये दो तीन ग्रिल भी दिख रही है।

जिसमे की एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पर और दो तीन कुर्सी रखी हुई है।

ये डिजाइंस बने हुए हैं ओर--

यहां एक बंदा भी खड़ा हुआ है जिसके मुंह पर ब्लर है।

यह ए यह लकड़ी की है टेबल सी पर रखा हुआ है।

एक ये ग्रिल पर बहुत से तार लिपटे हुए हैं।

और इसमें पेड़ भी दिख रहे है।

माता रानी की तस्वीर और शिव जी के महाराज पर ब्लर लगा हुआ है।

और यहां पर झोपड़ी भी है।

पीछे बोर्ड में ऑलआउट लगी हुई है।

यह एक टायर पंचर की दुकान है।

इसमें दो आदमी दिखाई दे रही है।